डाकघर में डाकिया भी रहते हैं।

त्रिरपाल तनाया हुआ है बहुत सारा गाड़ी लगा हुआ है स्कॉर्पि करपी है बाइक --

ये स्टूडियो है। इस स्टूडियो में रंग बिरंग के फोटो खींच कर के लगाया गया है। ये रूम है इस रूम में पंखा लटकाया है।

क क किनारे बहुत सारे पेड़ लगा हुआ हैं जैसे लग रहा है यह बगाम है यहाँ पर एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा आम पेड़ भी है।

यहाँ पर बहुत भीड़ भड़ाक के साथ महिला सब डांस कर रही है।

जेंट्स सब डांस कर रहे है और बहुत सुंदर लग रहा है यहां पर बोल बिजली भी --